इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोग कुछ लोग खड़े होके एक मशीन का कुछ काम सीख रहे हैं जिसमें एक आदमी वो मशीन चला के सबको दिखा रहा है।